यहाँ पर हमे एक बहोत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा हैं उस तालाब मे बहोत ही ज्यादा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा हैं जो कि भारी मात्रा मे पानी भरा हुआ--

यहाँ पर हमे एक दिवार पर चित्र बने हुई दिखाई दे रहे हैं जो कि अम्म अअअ मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही हैं जो कि पत्थर की मूर्तियां--